यहां पर एक वर्कशॉप है ऐसी वर्कशॉप है ए जिसमे अ -- रेपैर किया जाता है कार वगैरा अ -- कुछ मशीनों को रेपैर वगैरा किया जाता है।

अ जिसमें अ कुछ ह डेकोरेट किया गया है लाइटिंग वगैरह अ डेकोरेशन किया गया है। एंट्री गेट बनाया गया उसमें कुछ दो लेडीसे है अ जैसी बनाई गई है जो कि स्वागत कर रही हैं।

यहां पर अं -- एक फाउंटेन फेन लगे हुए है बहुत सारे फाउंटेन फेन लगे हुए हैं अ बहुत कलर की लाइट लगी हुई है।

और अ कुछ लुक अ खड़े हुए है नदी के किनारे पर और नदी के किनारे से एक मैदान पड़ा है जिसमे बहुत सारी हरियाली टाइप की हो रही है घास लगी --

यहाँ पर अं फ्लावर के बुके रखे हैं।

खेत में और बहुत सारे लोग हैं यहां पर और कुछ लोग अ ट्रौली में कुछ लोड किया हुआ है बहुत सारा उम कुछ फसल की कटिंग हुयी है।

ब्रिज का काम चल रहा है और यहाँ पे बहोत सारी मिट्टी वगैरह हो रही है। जिसकी व खुदाई वगैरह हुई है तो मिट्टी वगैरह हो रही है और कुछ लोग हैं यहां प --

यहां पर एक नर्सरी है। पेड़ो की नर्सरी है जहां पर बोहोत सारे पेड़-पौधे अम्म रखे हुए हैं --